डांस परफॉर्म कर रही है स --

और यहाँ पे सभी लड़कों को अलग-अलग डेक्स पे बैठाया गया है स --